और दिन का समय दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ एक्टिवा और बाइक के दिखाई दे रही है दीवार जो गुलाबी रंग की दिख रही दो पंखे दिख रहे हैं।

और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे सोलर प्लेट लगी है।

इस फोटो में मिट्टी दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं एक बिल्डिंग है जो लाल --

एक ने ब्राउन कलर की शर्ट पहनी और एक ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है काफी सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं बड़ी सी ये बिल्डिंग है।

एक ने ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है ठीक है जिम का यह फोटो है।

इस फोटो में काले रंग का दरवाजा दिखाई दे रहा है सीढ़ियां है जो लाल रंग की है एक लेडी खड़ी है जिसने काले रंग का सूट पेहना है।

ऊपर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है अंदर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

दूसरे के ऊपर नीले रंग का हेलमेट लगा है।

यहां पर काम चल रहा है पीछे एक बिल्डिंग है उधर भी काम चल रहा है।

और यहां पे लड़के भी हैं औरतें भी हैं ठीक है दो सब सब ने--

तेज रफ्तार में पानी बहता दिखाई दे रहा है ठीक है ऊपर की तरफ ब्रिज है जो कि काले रंग का बना हुआ है।

पॉवरटेक ठीक है और यहां पे और भी कुछ लिखा हुआ है।

और सोफा रखा हुआ जो की ब्लैक और वाइट कलर का है।

चेयर दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की शीशे भी लगे हुए हैं यहां पे ठीक है।